सामने एक बच्चों के खेलने की चीज है उस पर एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके पापा ने उसे पकड़ कर रखा है उस आदमी ने सिर पर टोपी पहनी हुई है।

पीछे एक दीवार है उस दीवार पर एक तस्वीर लगाई गई है आजू बाजू मे एक टेबल है।

सामने एक नदी है नदी में पानी है वह पानी काले कलर का है आजूबाजू में बहुत बड़े-बड़े पत्थर है उस पत्थर पर घास उगी है।

सामने कुछ बच्चे है वह झूले पर बैठे हुए है आजूबाजू मे बहुत सारे बच्चे भी है एक आंटी है वह बच्चीस को खिला रही है आजूबाजू मे पेड़ पौधे भी है।

सामने एक मूर्ति है। एक आदमी है वह मूर्ति की पूजा कर रहा है। मूर्ति के बाजू मे और दो मूर्तिया है। उसके--

नीचे बहुत सारी सुखी हुई घास भी है। नीचे की तरफ ऑटो रिक्षा खड़ी है।

यहा पर एक आदमी है। उसने ग्रीन कलर की टीशर्ट पहनि हुई है। उसके हाथों मे एक शर्ट है। वह उसे देख रहा है।

उसके नीचे कुछ दगड़ भी है वह काले कलर के है आजूबाजुमे पेड़ पौधे भी है वह काले कलर के है कुछ हरे कलर के भी है।

यह एक मॉल है इस मॉल मे बहुत सारी लाईटे लगी हुई है सामने एक छोटे बच्चे की कार है का कलर नीला है आजूबाजू मे लिफ्ट है।